आगे चलकर भी पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और उससे आगे और साइड में कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।